इ बहुत बला बड़ा कोई कार्यालय --

उम्म वर्ड बनाया मनाया चर्च की पूजा होती है ये लोग चर्च पूजा को ही ईसा मसीह को ही --